और बै उ म कुच बैग और जूते रखे हुए है सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए है कुछ लोग जो सामने खेल रहे है बैठे हुए है हरे-भरे पेड़-पौधे है बादल नील--

अगल-बगल हरे-भरे पेड़-पौधे है बादल हल्के नीले है।

--कुछ खाने का और बच्चे का पैंपर्स पा स्प्राइट पानी पीने का बॉटल माँजा कोको कोला जो रखी हुई--

आं पत्थरे हैं चट्टानें हैं और अगल-बगल कुछ हरे छोटे पेड़-पौधे भी हैं घास जमे हुए हैं बादल काले सफेद हैं।

काउंटर में समान रखी हुई है और सामने पर्दे लगे हुए है अलमारी रखी अलमारी लगी है ऊपर लाइट और झुमरे लगे है और सोफा नीचे रखा --